यह परचून की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां केक की आइसक्रीम की सब खाने की चीजों की दुकान--

यह एक केमिस्टर की दुकान है।

यहां बहोत सारी कुर्सी मेज बिछी हुई है और यह घुब्बारो से सजा रख्या है।

और बीच में एक आदमी भी घूम रहा है।

एक आदमी यहां बैठा हुआ है।

और इधर आदमी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं और--

यहां इस दुकान में बहोत सारे--

यह दुकान भरी हुई है अलग अलग तरह के--

बड़े बड़े बोरड भी लगे हुए हैं।